पीछे बहोत सारे लोग खड़े है कुछ औरतें खड़ी है कुछ आदमी और औरतें बैठे है।

किसी की लाल कलर की टी-शर्ट है तो किसी की येलो कलर की टी-शर्ट है तो किसी की केसरिया कलर की टी-शर्ट है।

यहां बीच में लोहे का सामान पड़ा है वह सारा ब्लैक कलर का है बीच में कुछ आदमी खड़े हैं दरवाजे लगे हुए है खिड़कियां लगी हुई है।

इस रूम के अंदर छोटे छोटे बच्चे बैठे है कुछ लड़कियां हैं कुछ लड़के हैं सामने बोर्ड लगा हुआ है एक सामने मैडम खड़ी है।

और अलग-अलग कपड़े हैं तीनों के अलग-अलग कलरे है वे डांस कर रही है बैठ के डांस कर रही है हाथ फैला के।

इस तस्वीर के अंदर बहुत सारी फूलों की मालाएं बनी हुई है लटक रही है।

पीछे बहोत सारे लोग बैठे हैं एक लड़की बैठी है बाल आगे किए हुए है लड़की के --

एक कैमरे वाला है जो फोटो ले रहा है।

नीले नीले कलर का पर्दा दिखाई दे रहा है।

पकाने के कैम्पर पडे है कुछ बोतलें पडी हैं कुछ पैकेट पड़े हैं बोरे पड़े हैं बोतले पड़ी हैं डिब्बे पड़े हैं।

यह दो आदमी खड़े हैं एक आदमी के हाथ में एक बाल्टी है एक बाल्टी नीचे पड़ी है सफेद कलर की रबड़ की।

इसे पेड़ लगे हुए हैं यहां पर कुछ लोग बैठे हैं कुछ लोग खड़े हैं हरे कलर के डस्टबिन पड़े है।

नाल रोड हीरो शोरूम राजाराम धारणिया ऑटो आज यहां आइ_सी_आई_सी_आइ बैंक के बैंक के आगे कुछ आदमी खड़े हैं।

और दीवार बनी हुई है दीवार के यहां एक बेनिसर नाम लिखा हुआ है येलो कलर का चार्ट है।

यहां सामने अमूल डेयरी की दुकान है दुकान के बाहर--

यहां पर बीच में सोफे पड़े हैं ब्लैक कलर के और लकड़ी की बेंच पड़ी है बेंच के चारों और कुर्सियां पड़ी है लकड़ी की।

पीछे बहोत सारे पेड़ लगे हुए ऊपर में दिवा पत्थर दिखाई दे रहे हैं बहोत बड़े बड़े कुछ पत्थरों के बीच में पेड़ लगे हुए --